मैदान है जिसमें रेस वगैरह का मुकाबला होता है।

ये एक इमारत है जिसके सामने सीढ़ियां लगी हुई हैं।

और इसमें दरखद वगैरह लगे हुए हैं और इसके सामने साइकिल वगैरह खड़ी है।

बैठने की जगह इसमें द्र्खत लगी हुए ईस --